पाताएँ भी लगी हुई दिखाई दे है यहाँ पर जीप में से एक दूल्हा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सुन्दर सी जीप खड़ी हुई सजी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे बहोत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे ऊँची बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे मशीन क्रेने मशीने दिखाई दे रही है यहाँ प ट्रैक्टर रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ प --

जे ऊंची-ऊंची बिल्डिंगे दिखाई दे रही है अप अप मुझे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे है यहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे --